एक ठहराव बना हुआ है।

ये यहाँ सब्जी हरे-भरे सब्जी हैं ।

इ जो अघोरिया बाजार मुजफ्फरपूर में स्थित है ।

यह एक स्टेशनरी शॉप है ।